सामने कुछ टाइल्स बिछी हुईं हैं टाइल्स के बीच से कुछ घास नजर आ रही हैं।

सामने एक स्थल बना हुआ स्थल के दो साइड बाउंड्री हो रही है।

बिल्डिंग के अगले वाले हिस्से पर रेड कलर का पेंट हो रहा है साइड में एक पेड़ खड़ा हुआ है ।

साइड में एक कमरा नजर आ रहा है कमरे में कुछ खिड़कियाँ नजर आ रहीं हैं ।